बहोत सारी भीड़ लगी है यहाँ पे औरते भी है पुरुष भी है यहाँ पे और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है और ये दरवाजा इसका कांच का है हरियाली भी इधर दिखाई दे रही है।

हम कुछ हो रहा है यहाँ पे बोहोत भीड़ भी है लेडीज है और जेंट्स भी है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है तिरंगा भी लहरा रहा है यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगी हुई है जोकि --